यहां इस मैदान में एक बाइक भी खड़ी है।

जो की डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूर पड़ा है सोफे के सामने।

इस तस्वीर में हम पुरानी कारीगरी देख सकते हैं जहां पर

जहाँ से बंदा इसके अंदर जा सकता हैं।

यह एक पहाड़ की तस पहाड़ों की तस्वीर है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि दो गाड़ियां खड़ी हैं।

जहां पर हमे एक बिल्डिंग भी दिख रही हैं और पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है।

इस तस्वीर में हम एक गाड़ी देख सकते हैं।

जो कि एक होटल लग रही है लाइटें जल रही है और यहां पर काफी ज्यादा चहल पहल है।

सब्जी वाला बैठा हुआ है जोकि सब्जियां बेचता है।

और डी_जे बजते हुए देखे जा सकते हैं।